कूलर और एक बाल्टी यहाँ पर रखी हुई है। दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सामने कुछ और दुकान यहाँ पर लगी हुई हैं। कुछ बिल्डिंगस भी दिखाई दे रही हैं एक बाइक पर दो लोग कहीं जा रहे हैं।

नीचे एक टेबल रखी हुई है जिस पे एक टी.वी. रखी हुई है जिस पर गैस सिलिंडर बता रही है कुछ लेडिसे यहाँ पर बैठकर टी.वी. देख रही है।

पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं से बनी हुई है सामने से काफी बड़ा रास्ता गया हुआ --

एक रोड है जहां पर एक ट्रक औ-आ रहा है और एक ट्रक जा रहा है। यहाँं पर एक बस भी खड़ी हुई है। कुछ सीमेंट की बनी हुई मुंड़िया यहाँं पर रखी हुई है।